और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है नीचे काफी सारे लोगो की भीड़ हमें नज़र आ रही --

पीछे की तरफ हमें पा चार डॉक्टर नजर आ रहे हैं जिसने व्हाइट कोट पहने हुए हैं सभी ने और साइड में एक लेडिस बैठी हुई हमें नजर आ रही है। उनके ठीक पीछे की तरफ पोस्टर्स बैनर से लगे हुए हैं जिसमें कुछ हिन्दी इंग्लिश में लिखा पड़ा है।

इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहां पर हमें अ एक मोर देखने को मिल रहा है काफी प्यारा लग रहा है देखने में वो उसके नीचे से उसका जो रंग है वह नीली से रंग का है।

पिक्चर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक गाड़ी देखने को मिलते हुई जिसपे पीछे की तरह बहुत सारे स्पीकर्स वगेरा बांध-बांध के लगाए गए है वहां पे और काफी अच्छे से अरेंज कर गए हैं।

और वहाँ पे दोनों तरफ हमें बोर्ड्स लगे हुए नज़र आ रहें हैं और इसमें कुछ इंग्लिश और हिंदी में लिखा भी हुआ हैं। वहाँ पे क्रिस्चियन की फोटो बनी हुई है मूर्ति सी थ्री-डी में।

और पूरा बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है जिसमें काफी प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाया गया है और उसमें गोल्डन कलर की ही लाइट इफ़ेक्ट आ रहा है।